कुछ नहीं दिख रहा ठीक है बट--

ये तो किसी स्विमिंग पूल की इमेज है । यहाँ पे झूला जो है न बहुत अच्छा लग रहा है । मुझे भी झूलना है ये इंसान झूल रहे हैं पर मुझे भी झुलना है।

अब क्या मालूम कहाँ पे जायेंगे क्या किस-किस को मिटायेंगे क्योंकि ये तो अगर किसी के ऊपर चढ़ जाए तो उसको तो पता ही ना चले।

हो सकता है बर्थ डे पार्टी भी हो बट मेरे हिसाब से तो मैरिज सेरेमनी लग रही है। डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है। बढ़िया लग रहा है सब कुछ यह इंसान क्या कर रहे है स्टार्ट हो गई है विच --